यह एक एस_पी_पी करके लिखा है।

और गनपति पीछे दिख रहे हैं कुर्सी है।

वाव ये होता है असली फ्लावर वाले का दुकान।